इस फोटो में हमें एक रिसेप्शन दिखाया हुआ है जो वाइट कलर का है और जिसके पीछे पोस्टर्स लगे हुए हैं।

जहां पर हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स केले दिख रहे हैं और सामने एक इंसान है।

जो रे मैरून कलर की और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए कुछ नोट गिन रहा है।

दो जिसके आगे हमें तोरन से फूल का काफी बढ़िया डेकोरेशन दिख रहा है।

और इसके राइट साइड में एक बड़ी सी घंटी ऊपर से टंगी हुई दिख रही है।

मम्मी डैडी जिसके आगे हम मैनीकेन देख सकते हैं जिस पर बहुत से तरह तरह के सूट टंगे हुए हैं।

मुझे हमें अलग अलग तरह की साइकिल दिख रही है जाहिर सी बात है ये एक साइकिल की शॉप है।

ये एक मिठाई की दुकान की फोटो है जहां पे हमें तरह तरह की मिठाईयां ट्रे में रखी हुई और प्लास्टिक में कवर्ड दिख रही हैं।

ये सब ग्लास कैबिनेट में रखी हुई हैं ग्लास कैबिनेट तीन रोज हैं।

पर भूरे रंग की है लेफ्ट साइड में हम एक मोबाइल टावर देख सकते हैं जो बड़ी और ऊंची है और हमें खुला आसमान और सफेद बादल भी दिख रहे हैं।

जहां पे हमें राइट साइड में जय गणेश टी एंड कॉफी सुप्रीम ऑमलेट सेंटर और आगे चौपाटी भेल और चार्ट भी दिख रहा है।

इसके बीच में एक डिवाइडर है जो येलो और ब्लैक कलर का है लेफ्ट साइड में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

इस फोटो में हमे एक रास्ता दिख रहा है जो यहां सीधा कुछ ब्ल्यू बेंचेज के अह पास आ रहा है।

राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में हॉलीडे वाटर एंड फन ।

और इन मछलियों को इनकी पूंछ और मुंह काट के रखा गया है राइट साइड में हम एक वायर देख सकते हैं जो रेड और ब्लैक कलर का है।

इस फोटो में हमें एक लड़की दिखाई हुई है जो अपनी फोटो खींच रही है अपने व्हाइट कलर के मोबाइल से ये एक मिरर के सामने अपने फोटो खींच रही है।

और सैनिटाइजर है पीछे हमें स्टेयर दिख सकती है जो ऊपर की तरफ जा रही है जहां पे टेबल और चेयर रखी हुई --

ऊपर जो रूफ है वो स्लैन्ट में है और उसके पिल्लर भी दिख रहे हैं और लेफ्ट साइड में कांच की दीवारें हैं।

इस फोटो में हमें एक रूम दिख रहा है रूम के बीच में एक बेड है और बेड के लेफ्ट साइड में खिड़की है जिसपे कर्टन्स लगी हुई हैं।

ऊपर एक पंखा दिख रहा है राइट साइड में एक मिरर है जिसके नीचे टेबल रखी हुई है।

ये एक ऑरेंज सूट है और पेंट्स हैं इनके पीछे हमें ज दीवार पे टंगे हुए और भी कपड़े दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक गेट दिख रहा है जिस पर दक्षिण विभाग कोली समाग समाज मंडल लिखा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक जगह दिखाई गई है जहां पे लेफ्ट साइड में बैनर पे लिखा हुआ है।

और पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिस पे दो लोगों की फोटो है और बीच में सरस्वती मां की फोटो है और आगे हारमोनियम सितार और तबला दिखाया गया है।

जो ब्लू कलर की सीट है और राइट साइड में हमें एक नाई भी दिख रहा है जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है।

और पीछे हम एक दुकान देख सकते हैं जिसके आगे कुछ मोटरसाइकिल भी रखी हुई है।

इस फोटो में हमें एक छोटा सा रूम दिखाया गया है जिसपर फाइबर के दीवार बनाई गई है।

और इसके डेकोरेशन पर्पल और व्हाइट बैलून से की गई है इस हट के ऊपर एक शेड है।

इस फोटो में हम एक फादर को देख सकते हैं जिन्हें अपने गले से एक क्रॉस लटकाया हुआ है।

लोगों ने ब्लू और ब्राउन ब्लेजर और औरतों ने व्हाइट स्वेटर पहना हुआ है।